यह दाशम फैमिली रेस्टोरेंट है।

घर का दरवाजा ब्लू कलर का है जमीन के नीचे में एक पीढ़ा रखा हुआ है।

टेबल के सामने एक कुर्सी भी है।

मस्जिद की खिड़की सब में परदे लगे हुए है।

पुतला का ऊपर में एक मगरमच्छ भी बना हुआ है।

यह एक केक दुकान है यह दुकान बहुत सुंदर है।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो बत्ती से सजी हुई है।

आदमी के सामने एक कलकुलेटर भी रखा हुआ है।

यह चित्र बर्फ का है यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

गमला में शो का पत्ता लगा हुआ है।

पार्टी में बहोत सुंदर से सजाया गया है।

डब्बा सब में चॉकलेट भी है यहां पर ब्रेड भी मिलता है।

यहां पर दो गेट भी है यहां पर एक सीढ़ी भी है।

इसमें काजू बिस्कुट भी इसमें काजू भी है यहां पर केला भी है।